एक बड़ा सा स्टेडियम बना हुआ है ग्रीन कलर की घास ही घास है पुरे खड़ा हुआ है यहाँ पे लाइटे लगी हुई है बैठने की जगह बनी हुई है लोग ऑडियंस की बैठने की जगह बनी हुई है यहाँ पे लाइ --

एक चर्च बना हुआ है यहाँ पर दो ब्राइड्स एंड ग्रूम वगेरा भी है जो दो जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए है सब ने टोपी वगेरा लगाये स्वेटर वगेरा पहने हुए हैं।

नीचे पंचा पड़ा हुआ है वाइट एंड ब्लाक कलर का एंड स्टेज पर बहुत सारे वो पड़े हुए है कचरा पड़ा हुआ है पीछे बोर्ड लगे हुए है।

यहाँ पे एक विशाखा डेरी के डेरी पार्लर के नाम से एक दूध डेरी है बड़ी -सी इसका जो डेरी-डेरी पे देने का जो गेट है वो जाली वाला गेट हैं जाली में से लोग हाथ डालकर अंदर से-- ।

एक बॉय जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है ब्लूटूथ टांगा हुआ है रेड कलर का गले में उसके--

दो है उनके हाथ में अगरबत्ती वगरा कुछ है वो पूजा कर रहे है लेडिस कर रही है दो तीन लोग है आस पास के लोग खड़े हुए देख रहे है। एक बॉय ने ऑरेंज अ कुर्ता --

एंड वो खडे हो के फोटो खिंचवा रहे है यहाँ पे अ-आस बड़ी सी जो कार है बस है उसके ऊपर हार डले हुए है बहुत सारे पूरी डेकोरेट की हुई हैं।

-- पर्दे डले हुए है आइड साइड में बाहर चेयरे रखी हुई है रेड कलर की बाहर की चेयर पर दो बॉयज बैठे हुए है अन्दर एक बॉय जो की कत्टिंग वगेरा करवा--